मुझे इस फोटो में तालाब नजर आ रहा है।

इस फोटो में लाइट नजर आ रही--

फोटो में नाश्ता नजर आ रहा--

इस फोटो में एस_बी_आई शाखा नजर आ रही--

लट्टो में मुझे मशीन नजर आ रही--

मुझे इस फोटो में डूबा नजर आ रहा--

इस फोटो में मुझे डेकुरेशन नजर आ रहा है।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

नजर आ रहे हैं इस फोटो में मुझे ट्रक नजर आ रहा है।

इस फोटो में मुझे स्टूडेंट नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे नदी नजर आ रही--

वेस्ट मटेरियल चीजे आ रही--

फोटो में मुझे कपड़े नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे फ्रूट्स नजर--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

मुझे एक कार नजर आ रही है। इस--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

इस फोटो में मुझे कार नजर--